और यहां पे रेड कॉलर का कुछ कपड़ा टांगा हुआ हैडंडे पे और साईड पे यह एक मटका भी रखा हुआ है और प ईट ओ की--